इस हॉल के दीवारे व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

इस हॉल में बहुत सारे लाइटें भी लगाई हुई है।

इस दुकान के बाहर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है।

बोर्ड पे पलामू मार्ट लिखा हुआ है।

यह एक चर्च का दृश्य है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

इस रूम में बहोत सारे बोड़े रखे हुए हैं।

इस गड्ढे में एक जे_सी_बी मशीन भी है।

इस बड़े से गड्ढे में पानी भी जमा हुआ है।

इस रूम के दीवारों पर पेंटिंग भी किया हुआ है।

बहुत सारा कुर्सियां भी रखा हुआ है।

इस रोड पर बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं।

घर में बहुत बड़े बड़े गेट बनाए हुए हैं।

यह एक बहुत बड़े फैक्ट्री का दृश्य है।

इस फैक्ट्री के अगल बगल पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

फैक्ट्री के पास जमीन हरे हरे दिखाई दे रहे--

इस रूम में बहुत ही लंबा टेबल लगाया हुआ है।

इस रोड के किनारे बहोत सारे लाइटे भी लगाए हुए है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

यह एक मंदिर का दृश्य है।

इस मंदिर में बहोत सारे मूर्ति जी का तस्वीर भी दीवारों पर बनाया गया है।

इस गार्डेन में पेड़ पौधे भी हैं।

इस मैदान में कुछ बाइक लगाए हुए है।

बिल्डिंग के बाहर बहोत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लग--

यह एक खुले मैदान का दृश्य है।

मैदान में बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं।

एक दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है।

दुकान में बहुत सारे अलमारियां बनाए हुए हैं।

इस रोड के किनारे एक ऑटो लगाया हुआ है।

रोड के किनारे प्लेटफार्म भी है।

इस रोड के किनारे घर भी दिखाई दे रहे है।

डेस्क के अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।